एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और एक खम्बा नजर आ रहा है सामने कुछ घर भी नजर आ रहे जो की बहुत ही दूर दूर घर बने --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

और ये वाइट कलर की और इसका कलर बहुत ही शानदार है कॉफी कलर नजर आ रहा है चार गेट नजर आ रहें --

मिस्त्री दिखाई दे रहा है जो की कुछ काम कर रहा है लोहे का और एक दिखाई दे रहा है और सामने एक ट्यूबलाइट भी दिखाई दे रही है।

हमें यहां एक सरकारी स्वास्थ्य नजर आ रहा है जिसके बाद कुछ चार पांच स्कूटी भी खड़ी हुई है दो तीन बाइक भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

सामने ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए होते हैं और बैठने की व्यवस्था भी बहोत सुंदर की हुई है एक वायर भी --

हमे यहां एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है यह भी बहुत ही बड़ा पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है जिसके अंदर चार जगह पेट्रोल भरा जाता है और --

ऊपर होर्डिंग है होर्डिंग का भी बहोत बढ़िया काम किया हुआ है इसके अंदर बहुत सारा--